काउंटर है।

एक बिल्डिंग है उसमें दो सेटर लगे हुए है।

सेटर में नीला कलर का है।

तीनों का मुंह नहीं दिखा रहा है।

पीछे पर्दा लगा हुआ है।

उसमें बैंक चलता है।

नीला कलर का है।

एक कोचिंग सेंटर है।

बहुत सारी साइकिल हैं।

एक आदमी कार को सजा रहा है।

अ एक टेबुल पर लपटप रखा हुआ है।

एक दरवाजा है खिड़की है।

बहुत सारे नम आदमी नमाज पढ़ रहे हैं।

एक कोचिंग सेंटर है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं।

कुछ बच्ची बैठे हैं कुछ बच्ची खड़ा हैं।